टाइल्स वगेरा बीछ बिछाए हुए हैं। कितना अच्छा सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं।

यहाँ क्लिनिक है। यहाँ पे डॉक्टर --

देख सकते हैं यहाँ कुछ बैठने का जगह है छोटा-छोटा घर है। यहाँ पे वैसे ठीक हुए हैं यहाँ पर देखिए घर में कितना अच्छा-अच्छा सामान दिया हुआ है।

और उधर में देखिए कोई-कोई ऊपर से ही पूजा कर रहें हैं। कोई-कोई नहा के मोती चढ़ा के उधर देखिए और कितना दूर तक पानी उम्म भरा हुआ है।

यह एक गाड़ी का गैराज है। देखिये यहाँ पे गाड़ी कितनी गाड़ी में रखी हुई है।